यह फोटो एक पार्क का है जहां पे बीच में हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

इसके पीछे पे पीछे साइड में बांस के बने हुए कुछ दिखाई दे रहा है।

यह फोटो एक पार्क का है। जहाँ पे हमें एक पंछी दिखाई दे रहा है जोकि काफी बड़ा है।

वह अंदर दुकान के किताबें भी नजर आ रही है वही इसकी दीवाले सफेद रंग की है।

यह फोटो एक मंदिर का फोटो है जहां पे हमें एक औरत दिखाई दे रही है जो कि पीले रंग का साड़ी पहने हुई है।

यह फोटो एक बस स्टैंड का है जहाँ पे हमें दो बसें दिखाई दे रही हैं। वह इनपे चढ़ते हमें कुछ --

न् यह फोटो एक जंगल का है। जहां पर हमें बोहोत सारे हिरन दिखाई --

यह फ़ोटो एक क्लास रूम की है जहाँ पे बोहोत सारे बच्चे हमें बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।